और एक लड़का अंदर है गेट के । एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ फूल लगे हुए हैं।

यहाँ पर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं बिल्डिंग के अंदर और एक फैन चल रहा है यहाँ पे ल कुछ लाइट जल रही हुई हैं।

यहाँ साइड में कुछ अंकल दिखाई दे रहे हैं उ और एक रखी हुई है टेबल पर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और ये अंकल कुछ काम कर रहे हैं।

यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो डांस सीख रहीं हैं कुछ लड़के भी हैं।

पर वो फोटो खिंच रहे है और यहाँ पर कुछ टॉवल रखे हुए हैं तीन और पानी के मटका रख --

और देख ने मे यहा ना पानी मे--

और यहाँ पहाड़ी में कुछ छोटे-छोटे पेड़ दिया दिखाई दे रहे हैं और यहाँ उनके बगल में --